साइज़ करने का सामान रखा हुआ है और कुछ लड़के एक्ससरसाइज कर रहे है।

उस नाव के ऊपर बहोत सारे व्यक्ति भी सवार हुए है।

बड़ी सी फ़ैक्टरि मे एक बड़ा सा लड़का खड़ा हुआ हैं। उसस लड़के ने सर पर काले रंग की टो--

उन बच्चों की प्रतियोगिता चल रही है।

सडक के एक ओर दो बड़ेसे रिक्सा खडी हुई-- है उन रिक्स्सा होंके बगल मे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है उस व्यक्ति ने सफ़ेद रंग की शर्ट पेहनी हुई है।

किसी चर्च बनी हुई है उस चर्च अह के बाहर बहुत सारी कलर कलर की लाइटो की सीरीज लगी हुई है।

बड़ासा हरा भरा सा गार्डन है अह गार्डन के अंदर कुछ बच्चे ए ए खड़े हुए हैं। गार्डन के आय--